ये मछली है जो की अहरा से पकड़ के लाए हैं और इसे पॉलिथीन में रखे हैं।

घास पर फर्शुन दे रहा है और फूल फूल का बगान है।

हीरो हीरोइन का फोटो भी चिपका हुआ है।